नदी में दो भैंस भी खड़ी हुई है।

यहां लाइटे भी लगी हुई है और सामने एक पानी की बोतल भी दिख रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह दिन का समय है और सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

सभी रैक में कुछ न कुछ सामान भरे हुए है।

एक अलमारी भी दिखाई दे रही है जिस पर कुछ बोतले रखी हुई है।

दीवार पर एक ए_सी भी लगा हुआ हैं।

इसकी वजह से यहां कुछ मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही है।